इस इमेज में एक होटल दिखाई दे रहा है यहां पर टेबल कुर्सी लगे हैं।

और सामने गेट भी नजर आ रहा हैं।

इस इमेज में एक क्लास रूम दिखाई दे रहा है जहां पर बैठने की कुर्सी लगी है।

इस इमेज में एक सब्जी की दुकान दिखाई दे रही है।

यहाँ सामने बैठने की बेचेंस भी लगी हैं और कुछ पेड भी दिखाई दे रहे हैं।

और लाइट्स भी जलती हुई नजर आ रही है।

सामने कुछ मजदूर दिखाई दे रहे हैं और यहां ईंट भी नजर आ रही है।

यहां पर बाइक्स और कार खड़ी है सामने कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं।